येह एक बैंक है बैंक का जो शटर है वो भी ब्लू कलर का है जो बड़ा वाला शटर है वो भी ब्लू कलर का--